इसके कारण लोग यहाँ पे शादियाँ कराना पसंद करते है और यहाँ पे शादियाँ बहुत ही अछे तरीके से किया जाता है ।

इस मॉल में बहुत सारे लोग आते है कपड़े खरीदने के लिए यहां पे बहोत ही --